हुए हैं। साफ पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

शादी का गार्डन है यहाँ पर पंडाल छोटे-छोटे पंडाल सजे हुए हैं जिनका रंग लाल है।

डेकोरेशन पिंक और वाइट कलर से सामने परदे लगे हुए हैं लाइट है कुछ लोग खड़े हुए हैं।

चारो तरफ तार फेंसिंग है। सामने जाली लगी हुई है। नीचे ग्रीन ग्रीन घास है।

चित्र में एक गुमद दिखाई दे रही है उसके पास में दो छोटी-छोटी गुमदे है। सामने एक बिल्डिंग हे ।

खंभे लगे हुए हैं। एक आदमी लाइनिंग वाली शर्ट पहने खड़ा है।